ये एक स्टेशन है।

चाट की दुकान लगी हुई है कोल्ड ड्रिंक्स है इसमें कुछ सब्जियां काट रहे हैं इधर कैरेट रखा हुआ है सब्जी है।

दुकान में पेंट वगैरा का काम है शायद--

इसमें शुभ और लाभ लिखा हुआ है केसरिया रंग लगाया हुआ है।

पानी काफी है हरा है पानी चारों तरफ हरियाली भी है पहाड़ भी है।

सामने पीछे एक घर भी है केसरिया रंग का।

तभी लड़कों की शर्ट है व्हाइट ब्लैक पैंट लड़कियों की रेड ग्रीन येलो ।